यह एक साइकिल की दुकान है जिसमें बहुत सारी साइकिल रखी हुई है।

तीन गमला है उसमें वृक्ष है।

जहां एक लड़की हरे रंग की छतरी पहनी है पीछे ब्लैक कलर का बैग टांगी है।

ये एक ऑफिस का दृश्य है जहां ब्लू चेयर पांच छ ब्लू चेयर लगे हुए है।

कुछ ईनो के पैकेट भी रखे हुए हैं और ब्रेड रखे हुए हैं।

ये एक बिल्डिंग की तस्वीर जो बिल्डिंग का कलर है व्हाइट है और ब्लू भी है।

दो स्टार बने हुए हैं पीछे बहुत सारी बिल्डिंग है जो क्रीम कलर का है।

टब में छोटी छोटी मछलियां रखी हुई है।

गाड़ी जो कभर चढ़े हुए।

एक छोटा सा रु अ ये बना हुआ है रोड जैसा।

एक बेलेरो बोलेरो है खराब है।

डमी गुलाबी रंग के लहंगे पहनी हुई है एक डमी मैरून कलर की लहंगे पहनी हुई।

सामने साड़ी पीले रंग की साड़ी लटकी हुई है।

सामने एक पीपल का पेड़ है और थाना के अंदर एक औ अल्टो रखा हुआ है।

और अ एक पेड़ है और एक सूरज है जिसमें तेज रोशनी आ रही है और घर है बगल में।

ये एक फैमिली मार्ट की शॉप है।

यहां एक पॉट पॉट बना हुआ है उसमें बहुत प्यारी फूल रखे हुए हैं और बहुत सारे बैलून रखें इसके कलर रेड है पिंक व्हाइट येलो अह व्हाइट है।

दो खिड़की बनी हुई है।

आटे की पैकेट बनी हुई है बासमती चावल की पैकेट रखी हुई है और सामने चीनी चपाती के पैकेट रखी हुई है।

बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

दो आदमी स्कूटी में बैठे हुए है दो आदमी खड़े हैं।

सामने बिल्डिंग बनी हुई है और नीचे गोदाम है ऊपर खिड़की बनी हुई है।

सामने पीपल की वृक्ष है एक लोहा का खम्मा है।

और एक रिक्शे में एक आदमी जो और ऑरेंज गमछी और सट पहने हुए हैं।

सामने येलो कलर का बिल्डिंग है और ग्रीन कलर का बिल्डिंग बना हुआ है।

कियां शीशे की है ऊपर छत पे सरिया बना हुआ है।

पीछे गंदी सी रोड है।